यहां पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं जिन्होंने ऊपर टोपी ओढ़े हुए हैं सर पर।

यहां पर सामने एक लड़का खड़ा है जिसने जैकेट पहने हुए है और हाथ जेब में किए हुए है।

और नीचे की तरफ एक काउंटर है जिसके ऊपर कुछ किताबें रखी हुई हैं।

इस फोटो के अंदर सामने एक दुकान दिखाई गई है।

पीछे की तरफ एक सीमेंट का खंबा भी दिखाई दे रहा है।

साइड में एक रोड निकल रही है जिस पर कुछ वाहन चल रहे हैं।

और अंदर लोहे की रेक बनी हुई हैं जिनमें बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं।

सामने कुछ पंखे लटके हुए हैं और एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो कि सीढ़ियों पर चढ़ रहा है।

ऊपर की तरफ कुछ सोफे पड़े हुए हैं जो की सफेद कलर के गोल्डन कलर का डिजाइन बना हुआ है।

फोटो के अंदर सामने की तरफ एक ग्राउंड दिखाया गया है जिसमें नीचे पानी भरा है।

सामने की तरफ कुछ बिजली की तार दिखाई दे रही है और ऊपर की तरफ कुछ डिजाइन बना हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो के अंदर सामने एक क्रेन खड़ी है जिसके ऊपर एक कार खड़ी है जो सफेद कलर की है।

इस फोटो में सामने बहुत सारी कार खड़ी है जिनमें से कुछ सफेद है कुछ काली है।

नीचे की तरफ फर्श का कलर काला है और दीवार का कलर पीला दिखाई दे रहा है।